अ ऑटो दिख रहे हैं कुछ सामान वगैरह दिख रहे हैं कुछ लोग भी दिख रहे एक फल की दुकान भी दिख रही हैं और पीछे घर वगैरह भी दिख रहे हैं कुछ खाने पीने की समाने भी --